पंडाल में बहोत सारे चेयर रखे हुए हैं जिसमें व्यक्ति बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं।

यह तस्वीर एक जनरल स्टोर की है जिसकी बोर्ड के आगे आकाश जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक पुरानी बस स्टैंड की है।

स्टेज के आगे एक जेंट्स ढोलक बजाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने और किताबें कॉपियां हैं।

यह एक चर्च की तस्वीर है इस चर्च में शादी हो रही--